ये घर दिख रहा है जो कि बहुत बड़ा है।

ये हैं कि यहां पर एक--

यहां पर एक बहुत बड़ा सा होटल --

जो की देखने में बहोत ही--

इस पिक्चर में हम देख सकते हैं।